इस फोटो मे एक दरगाह दिखाई हुई है।

यह फोटो कुछ बच्चों की क्रिएटिविटी को दर्शाती है यहां बच्चे अपने नीचे बैठकर --

चीजें बना रहे हैं जो इन्हें अत्यधिक क्रिएटिव बनने पर मजबूर कर देतीं हैं।

क्रीम व्हिप्ड क्रीम सब कुछ बहोत ही एक दम प्योर मिलता है।

जो कि रेलवे क्वार्टर्स हैं इन क्वार्टर्स की बहोत अच्छी स्थिति यहां नजर आ रही--

यह फोटो बहुत ही व्यस्त पिक्चर हॉल --

पर्स दिखने में बहोत ही ज्यादा अच्छी लग रही है बहोत शानदार है।

एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखेगा जिसमें यहां का मालिक --